और एक भालू जो है रेलिंग पे चढ़ा हुआ है।

दे अअअ देखने में ऐसा लग रहा है की किसी ने इसका डेकोरेशन काफी बढ़िया किया हो और देखने में काफी अच्छी लग रही है।

देखनेमें काले कलर का काला रंग है इस लड़ आदमी का और ये गुफ़ा में जाने की कोशिश कर रहा हो देखने में ऐसा लगता है |

अच्छी नहीं लग रही है देखने में ऐसा लग रहा है की मरम्मत इसकी मरम्मत --

और ये देखने में तो लग रहा है की लाइटे लगी हों इसके आजू-बाजू।

वाइट कलर की शर्ट पहने हुए हैं जो की एक जगह पे वे डिस्कशन कर रहे हैं |